उसके ठीक नीचे में चार पाँच खिड़की दिख रहे है जो कि छेका हुआ है।

तस्वीर को देखकर लग रहा है यह सब शाओलिन है जो की बोध धर्मं को अच्छी तरम से मानते है।

तस्वीर को देखकर लग रहा है यह एक बहोत बड़ा रेलवे स्टेशन है जो की--

अलबेस्टर लगे हुए है जो कि बहुत बड़े-बड़े है और काफी लम्बे भी है और उसके ठीक नीचे में एक कार्यालय जैसा दिख रहा है इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा है और उसके ठीक नीचे में--

सावधानी की लिए एक घेरावट बनाया गया है जोकी बहुत अच्छा दिख रहा है।

तस्वीर को देखकर लग रहा है यहाँ शहर में एक बाढ़ आया है जो कि बहुत बड़ा--

जोकि बहुत भीड़ है इसके में और एक गाड़ी में चर दो-दो तीन-तीन लोग बैठे है इसको देख कर पता चल रहा है की यहाँ पस काफी भीड़ होगा और है।

इसके ठीक आगे में तीन बाइक दिख रहे है जोकि अलग-अलग है उसके ठीक आगे में एक लोक-सेवा है जिसमें उसका आने का दरवाजा है और यह अलबेस्टर का है।

तस्वीर को देखकर लगा रहा है यह एक गार्डन जो की घूमने का हो जगह होता है।

और उसके नीचे में बहुत बड़ा सीढ़ी बनाया गया जो की दो है जिसमे बहुत बड़े-बड़े और काफी लंबे है उनका ये प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही बड़ा है इसके ठीक नीचे में बहुत सारे व्यक्ति लोग है जो कि उनके दर्शन के लिए आये हुए--